ट्रोल टैंटे पीछे की तरफ बहोत बड़े-बड़े पेढ़ लगे हुए हैं और इस पेट्रोल टैंक पर एक बिजली का खंबा लगा हुआ है जिसमें कि लाइट लगी हुई है।

इन आश्रमों में बहोत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और दरवाजे लगे हुए हैं यहाँ पर ब्रिज का भी बना हुआ है और नदी के किनारे पर कुछ पहाड़ भी हैं जिनमे की बहोत बड़े बड़े पेड़ है लगे हुए हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर बहोत बड़ी झील बनी हुई है इस झील के किनारे पर कुछ मकान भी बने हुए हैं इन मकानों में व्हाइट कलर किया गया है।

और यहाँ पर सामने की तरफ कुछ अ-सामान टंगा हुआ है इन में चूड़ी बिंदी और भी सामान है और सा --

और इन पहाड़ियों पर बोहोत ब घने और बोहोत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए है ।